उस ए. टी. एम. के बाहर एक इंसान खड़ा है जिसने ब्लैक कलर की लोवर और वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है।

ए.टी.एम के पीछे एक पेड़ दिख रहा हैं।

बड़ा सा घर दिख रहा है जो की वाइट कलर का बना हुआ है बस जिस रोड पर खड़ी उसका कलर ब्लैक एंड व्हाइट --

इन जामुनों के साथ एक रेड कलर की टोकरी और दिख रही--

हैं इसमें भी शायद जामुन रखे हैं पर इसमें बहुत सारे ढेर सारे जामुन रखे देखे --

और राइट साइड में नेक्सा करके लिखा हुआ है इसमें सामने एक कांच लगा है जो कि बहोत बड़ा है।

इस इमेज में कुछ भूटे रखे हुए नीचे दिख रहै हैं जिनका कलर च--

ग्रीन कलर का है और ए उनके किसी निजी जमीन पर रखे हुए उनके साथ में एक --

जिसके दोनों तरफ पानी भरा हुआ है और बीच में डैम पर कुछ लोग खड़े हुए है।

ये लोग कुछ लोग अंदर नहा रहे हैं कुछ लोग बाइक धो रहे है डेम के ऊपर बाइक भी खड़ी--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

इस भवन का कलर व्हाइट है इस बोर्ड में रेल आरक्षण केंद्र करके लिखा है इसके नीचे दो खिड़कियाँ लगी है जो की ब्लैक कलर की है।

इस इमेज में एक बस स्टॉप दिखाई दे रहा है जिस में बहोत सारी बसें खड़ी हुई है।

इनमें कुछ बसों का कलर व्हाइट कुछ रेड और कुछ ब्लैक कलर की है कुछ बसे --

उसके लेफ्ट साइड में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ है राइट साइड में एक बाल --

जिसके ऊपर लाइट लगी हुई है जो की वाइट कलर की है पेट्रोल पंप के नीचे कुछ लोग स्कूटी और बाइक में पेट्रोल भर रहे हैं यह पेट्रोल पंप एचपी का है।

तो कुसु आलू पड़े हैं इनमें से कुछ आलू कटे तो कुछ सही आलू दिख रहै हैं।

एक सामने एक घड़ी लगी है जिसमें दो बजके आठ मिनट छब्बीस सेकंड बता रहा हे ।

बड़े-बड़े पेड़ पौधे लगे है चर्च की सीढ़ियां ब्लैक एंड व्हाइट कलर की है सामने कारपेट बिछाया है।

जो की रेड कलर का दिख रहा है।

इस इमेज में छः पत्रे रखे दिखे रहे है।

इन वोटो के ऊपर सीटे लगी हुई है जो की रेड कलर की है ये कलर इनका येलो है।

येलो कलर की टी-शर्ट और शर्ट पहनी है उनके पीछे गेट पर फूलों के हार टंगे हुए हैं।

इस इमेज में बड़ी-सी सीढ़ियाँ दिख रही है जिनके ऊपर दिए जलते हुए दिख रहे है।

ये इनके सीढ़ियों के दोनों तरफ चार खंभे लगे है जो की बहुत बड़े-बड़े है।

और इसमें एक पूल की रेलिंग दिख रही है नदी के दोनों तरफ बड़े-बड़े खेत दिख रहे है कुछ पेड़-पौधे लगे हुए भी दिख रहे--

घर और पेड़ लगे हैं घर का कलर रेड और --

बीच में एक इंसान अपने हाथ में एक बच्चे को उठाए हुए पानी में चलता जा रहा हैं।

मूर्तियों के साथ में खंभे लगे हुए है ये मूर्तियाँ टीन सेड के नीचे रखी है इनमें--

और पीछे दीवार के ऊपर एडवर्टाइजमेंट --

ट्रेन के ऊपर कुछ बिजली के तार दिख रही हैं ट्रेन के पीछे एक बड़ा-सा भवन बना हुआ--

दीवार का कलर ब्लैक एंड व्हाइट है दीवार के ऊपर दो लाइटें लगी हुई भी दिख रही हैं।